मंदिर के आगे ही कुछ मिट्टी का पेड़ सा बना हुआ है और यहां पर बहुत सारे पुरुष महिलाएं और बच्चे भी खड़े हुए है।

यहाँ पर हमे एक नदी दिख रही है जिसमे काफी सारे बाँस खड़े हुए हैं और यहाँ पर नहाती हुई कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं। पीछे बैठे हुए कुछ महिलायें पूजा भी कर रही है। पीछे खड़े हुए कुछ पुरुष भी हैं ।